उसके बीच में डी_जे के कुछ शर्मा आई_ओ_डी लिखा हुआ है ऊपर में तार है बगल में घर हैं।

और दीवार सब खटा -पटा दिख रहा हैं।

यहाँ कुछ भुट्टे नज़र आ रहे है जो कि जमीन में रखी हुई दिखाई दे रही है उसके बगल में मिट्टी भी है और --

यह एक किसी प्रकार की दुकान नज़र आ रही है जिसके ऊपर में हेरर रेफ्रिजरेटर लिखाया हुआ है और इसके नीचे में भी ग्लास डोर --

यहाँ पे बहुत से जानवर दिखाई दे रहे है और उसके चारों तरफ जाली लगी हुई नजर आ रही है बीच में बांस भी --

खड़े हुए नज़र आ रहे है और एक ब्यक्ति नीचे लेटा हुआ है और ब्यक्ति उसके पैर को पकड़ा हुआ नज़र भी आ रहा है उसके बगल में एक पानी की बोटल भी हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जो कि उसका शटर दोनों खुला हुआ है उसके बगल में एक लाल रंग की कुर्सी है जो कि हैं।

जिसके दरवाजें सब खुले है उसके बगल का शटर बंद है उसके ऊपर में सेंट्रल बैंक लिखाया हुआ भी दिखाई दे रहे है ऊपर में कुछ लाइट भी हैं।